यहां एक मूर्ति बनी हुई है जो की गोल्डन कलर की है उसने गोल्डन कलर का डब्बा भी पड़ा हुआ है नीचे वह मूर्ति है जो की पिंक कलर की है।

यह एक रोड है जहां एक कर खड़ी हुई है कार का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है येलो कलर के नंबर प्लेट है पीछे के-अ-टावर है उसमें बहुत सारे तार दिए गए हैं।

सुनसान रोड है जिसपे एक कार खड़ी हुई है कार का कलर ब्लैक एण्ड व्हाइट है येलो कलर की नंबर प्लेट लगी हुई है पीछे एक खंबा लगा हुआ है जिसपे बहुत सारे तार लगे हुए है पीछे बोहोत सारे पोधे भी है।

भवन है जहां शादी हो रही है और यहाँ बहुत सारे लोग है और यहाँ नीचे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

दो लेडी भी खड़ी है जिन्होंने शॉप जिन-जिन्होंने शॉपिंग की है ऊपर सीलिंग है और उसपे क्रीम कलर का कलर पूता हुआ है और बोहोत सारे स्टैन्ड भी है जिसमे जीन्स टंगे--

यह एक पोस्ट ऑफिस है जिसका कलर क्रीम एंड रेड है।

एक हाईवे रोड है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं नीचे से पानी जा रहा है जो की वाइट कलर का--

और पेड़ों की जो जड़ होती है वो नीचे लटक रही है बोहोत सारी नीचे पत्ती पड़ी हुई है जो की सुख चुकी है झरना बोहोत सुन्दर दिख रहा है जो की व्हाइट कलर का है और ग्रीन का काम्बनैशन दे रहा है।